ये एक किचन है जिसमें की कैबिनेट लगी है आर.वो रखा है और जो सफेद रंग का दिखाई दे रहा है।